बाइक पर बैठा बैठा हुआ है एक आदमी जा रहा है और यहां से रोड दिख रही है और कुछ पेड़ दिख रहे हैं बहोत सारे--

कुछ मशीने दिख रही है पीले कलर का स्टूल रखा हुआ है नीचे ग्रीन कलर की कार्पेट --